रहे हैं।

नाइन एट वन फाइव फोर जीरो सिक्स ।

इसके बाहर टू स्कैनर टेबल पर --

पानी के टंकियाँ हैं।

ये सारे लोग एक्सरसाइ --

ये पॉट सेल्स सेंटर है।

यहां गमले बुट्टे सेल किये जाते है।

बी पड़े हैं। ऊपर दो--

कार डिस्को मे डांस --

ने व्हाइट कलर के यूनिफॉर्म पहने हुए--